लाल फूल देख रहे हैं और पीछे पहाड़ दिख रहे हैं।

पानी ग्रीन कलर का हो रहा है और कुछ ब्लू कलर का भी है।

जिसने अंडरवेयर पनियान पहन रखा हैवो एक पत्थर के ऊपर बैठा हैऊपर बादल----

एक जगह पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैंऔर बड़े भी बैठे हैं।

जो एक गुरु का आश्रम लग रहा है एक गुरु---

और ऊपर पंखे भी लग रही हैं और लाइटें भी जल रही हैं नजारा बहुत अच्छा है।

एक ट्रेन है उसके पास में पटरी हैं।

पीछे जाल बना हुआ हैजो येलो और ग्रीन कलर का है।

आगे उस पर शेर का मुंह बन रहा हैजो येलो कलर की उसके अंदर कुछ लोग भी बैठे है और नीचे रेड कलर के पहिए बन रहे हैं।

और उसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और ब्लैक कलर की पेंट पहन रखी है।

एक आदमी खड़ा है उसकी दुकान पर कई बोतलें रखी है वो सब बोतलें वाइट कलर की हैं।

उगता हुआ सूरज दिख रहा है य वो पिंक कलर का और कुछ बादामी कलर है।

यह एक जिम जिम करने की जगह है जहां पर जिम करने की मशीन रखी है और एक आदमी सेल्फी ले रहा है।

ये पुरानी कारीगरी पे पुरानी कारीगरी की बनी हुई है कुछ मूर्तियां---

कुछ अलग-अलग सबके अलग-अलग कलर दिख रहे हैं।

और गुफा में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिखा हुआ है और वह कुछ---

यहां पर जिम की बहुत सारी मशीनें दिख रही हैं पर यहां पर कोई जिम नहीं कर रहा है।

जिम की सारी मशीन ये दिख रही है जो सब ब्लैक कलर की है।

कोई ब्लैक कलर की कुर्सी हैकोई ब्राउन कलर की कुर्सी है और पानी की बोतल भी दिख रही है रेड कलर की कुर्सी भी है और पंखे भी लगे हुए हैं।